यहां बड़े बड़े लाइट वाले झूमर भी लगाए गए हैं और टेंट भी लगे हैं।

ये एक दुकान है यहां बहुत सारे पिंजरे रखे हुए हैं सामने कुछ गुल्लक और --

ये एक हॉस्पिटल रूम है यहां बहोत सारी मशीन्स रखी हैं सामने चेयर्स लगी हुई है।

दीवार पर भी फोटो लगी हुई हैं।

आदमी काम कर रहा है एक खिड़की दिख रही है नीचे बहोत सारा सामान--

और तस्वीरें भी लगी हुई हैं।

और दूसरी तरफ स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है।

दूसरी तरफ डब्बे भी एक पड़े हुए है।